इस क्षेत्र में यह दिखाया गया है किया बहुत बड़ा मैरिज हॉल है।

प्रसाद दे रहे हैं माता रानी की मूर्ति हैं।

दुर्गा जी हैं एक शेर हैं एक दानव हैं एक राक्षस है।

ये बहोत बड़ा हॉल है इसमें बहोत सारे पीलो लगी है इसमें बहोत सारे--

तीन मंदिल हैं टाइल्स लगी हैं तीन मंदिर गमला है एक लाइट्स हैं दो सांप हैं।

तीन खिड़की है तीन दरवाजा हैं।

इस चित्र में दिखा गई है बहोत बड़ा तालाब है ये--

एक आंटी गेट पे खड़ी हैं चैनल लगा है पर्दा लगा है शीशा लगा है उसमें टी_वी हैं पंखे लाइट हैं और जन--

यह एक पैथोलॉजी लग रही है।

इसमें रीढ़ की हड्डी की दवा मिलती है।

क्षेत्र में दिखाया गया है कि यह मेरठ ये का केसर हॉस्पिटल है।

हैं और साइड में पैनल लगी है जंगले हैं साइड में चैनल लगी हैं।

इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में ये दिखाया गया है कि ये बहोत बड़ा सा घर बन रहा है।

और पीछे घर है पेड़ पौधे हैं जंगले हैं।

इस इस चित्र में दिखाया गया है कि इसमें तीन पौधे हैं बड़े बड़े आम के और छोटे छोटे पौधे हैं।

इस क्षेत्र में दिखाया गया है कि यह छट पूजा का मेला है सोनपुर में।

रोड पर खिलौने बिक रहा है मोटरसाइकिल है साइकिल है और--

और बहोत सागवान का पेड़ है बहोत सारा छोटे छोटे पौधे हैं।

इस सेट में दिखाया गया है कि ए बहोत बड़ा सा रोड है।

एक औरत बैठी हुई एक औरत खड़ी हुई है झोला लेकर और सारे मास्क लगाए हुए हैं।

एक काउंटर पे तीन खरे है एक चैनल है।

बहोत बड़ा सा गेट है उस उसमें एक लड़का जा रहा--

गेट्स हैं इसमें दो अंकल हैं एक गार्ड हैं।

फिर लाइट्स लगी हुई हैं छोटे छोटे पौधे हैं ग्राउंड है इस ग्राउंड में पाइप हैं।

और इसमें एक डॉक्टर पूरा पॉलिथीन पहनेंगे एक लड़की मास्क लगाई हुई है।

सूर्य उदय का और पेड़ पौधे है और बड़े से बड़े चट्टान दिख रहे हैं।

जेंट्स हैं और लेडीस हैं उसमें और छाता लगा गया है चेयर्स हैं।

और एक नाय चला रहे हैं बहोत बड़ा सा तालाब है तलाब--

और जो पेड़ पौधें है तार है पैनल है।